पेड़ पौधे दिख रहे हैं बहुत सारे गमले हैं।

यह एक स्टार्ट योर जर्नी टुडे है।

ताला दिख रहा है कुछ लाइटे दिख रही है।

जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं पानी है।

शटर दिख रहे हैं पेड्डे दिख रहे हैं।

अग्रवाल शू स्टोर है जिसमें मुझे मीटर दिख रहा है।

इसमें मुझे यह मेज़ दिख रही है।

बहुत सारे आदमी हैं छप्पर है।

साइकिल दिख रही है कार दिख रही है मोटरसाइकिल है पीछे आदमी है।

खिड़कियां दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत बड़ी हवेली है।